तो एक दुकान दिख रही है। दुकान में अलग-अलग तरीके के फेविकोल पेन --

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं तो एक बहोत बड़ी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

बगल में कुछ दुकाने दिखाई दे रही है। छोटे-छोटे घर है। बीच में एक कार खड़ी हुई --

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं तो एक बहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में अलग-अलग तरीके के --

स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है और हर जगह हरियाली और लंबे-लंबे पेड़ हैं।

गई है। अलग-अलग विषय यहाँ पे --

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि --